एक छोटा सा गार्डन है गार्डन का रेलिंग लगी हुई है बाहर गमले पौधे लगे हुए हैं।

सी बत्ती लगी हुई है पोल में।

ये एक मकान है मकान के बाहर एक--

छत के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ बोर्ड में--

बहुत सारे लोह के सामान नीचे जमीन पर रखे हुए हैं।

गुलाबी कलर के कपड़ों से ढका गया है।

टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई है।

दाहिनी तरफ में कुछ मेडिसिन टेबल --

एक एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के ऊपर एक उम्म --

उनपे फूलों फूल की बरसात की जा रही है।

के नीचे कुछ किच यहां पे किचन का सामान रखा हुआ है।

सजाया गया है पर्दों से डेकोरेट किया गया है सामने की तरफ में--

ये कपड़ों का दुकान है सामने एक अ उम्म डमी लगा हुआ है।

लहंगा लहंगा उसको पहनाया गया है बगल में एक एक और डमी में उसको साड़ी पहनाया गया है।

दूसरे डमी को साड़ी वह पहना रहा है।

सामने एक डमी है जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है।

पर लाइट का खंबा बड़ा सा खंबा है।

ऊपर दो हथेलियां को दो हंसों का जोड़ा बनाया है।

एक कुछ सामान रखे हुए किताबें र एक कॉपी रखी हुई है।

सामान तो चॉकलेट के डब्बे रखे हुए हैं।

ये एक सामने एक सोफा लगा हुआ है दो सोफे लगे हुए हैं।

नीचे का नीचे का फर्स सफेद कलर का मार्बल लगा हुआ है।

सामने एक घना सा जंगल दिख रहा है हरे हरे घास है नीचे ऊपर बड़े-बड़े पेड़ हैं।

सामने की तरफ में कुछ पीले कलर का कुछ --

ये एक पंडाल है पंडाल को काफी सुंदर सजाया गया--

माँ दुर्गा की मूर्ति लग रही हैम म मूर्ति के सामने बहुत लोग खड़े हैं।

खड़े हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं कुछ बाहर भी आ रहे है।

कुछ लड़के हैं लड़कियां हैं एक टीचर है जो उन्हें गाइड --

ये सामने की तरफ काफी घन्ना जंगल दिख रहा है।

ये कपड़ों का दुकान है साड़ी की दुकान है।

दुकान में काफी बत्तियां लगी हुई काफी सामान भरा हुआ है।

टंगी हई है ये भी कुछ समान की दुकान है।

शोरूम के ऊपर पर लिखा हुआ है हीरो इलेक्ट्रिक ।

सब कुछ सामान रखी हुई है बड़े-बड़े टब है बाल्टियां हैं।

काली जी की मूर्ति है राम जी सीता जी की मूर्ति है शिव जी की मूर्ति है ।

बोर्ड लगा हुआ है उस पे कैट लिखा हुआ है।

तो सोफे लगे हुए हैं दूसरी साइड में एक लड़की है जो--

सामने की तरफ में एक टेबल के वर एक ग्लास रखा हुआ हैं।

अंदर की तरफ भी बहुत भीड़ है कुछ लोग बाहर भी खड़े हैं वेट कर रहे हैं।

जो नीचे किताबों की तरफ देख के कुछ पढ़ा रहे हैं।

सामने चार्जर लगी हुई है बांछे लगी हुई है टेबल रखा हुआ है।

यहां बहुत सारे टायर दिख रहे हैं नए कुछ पुराने--

सामने टेबल पे नए-नए टे टाय र रखे हुए हैं एक अलमारी है अलमारी के ऊपर भी रखा हुआ है।

नीचे की तरफ मैं प्लास्टिक में कुछ सामान रखा हुआ है।

पीले कलर की चादर उं उं कपड़े बिछाएंगे टेबल कुर्सियां में--

एक सुंदर सा कार्पेट बिछाया गया ऊपर झूमन लगे हुआ है।

आरती की ऊं बड़ी सी थाल लगी हुई है।

सामने की तरफ में अ उम्म सफेद और--

पीछे एक पोस्टर लगा हुआ हैं एंपायर --

सर्टिफिकेट ट्रॉफी रखी हुई सजी हुई है।

कारीगरी किया गया है बहुत सारे लोग बनाए गए हैं--

बैठने का सीट भी दिया गया है।

पेड़ सामने पेड़ में एक नींबू दिख रहा है।

छत के ऊपर छत के ऊपर है।

सामने बहुत सारे चेयर टेबल लगे हुए हैं।

दू दूसरी स दाहिनी साइड में एक सड़क है।

बाहरी साइड बाहरी साइड में एक कार खड़ी है एक ट्रैक्टर को ट्रैक्टर खड़ा है।

चल रही की गाड़ियां चल रही है दूसरी साइड में भी कुछ गाड़ियां --

दुकान को काफी सु सजाया गया है सफेद और लाल कलर के बलून सजाया गया है।

दुकान में बहुत सामाने रखी हुए सब खाने की चीजें हैं।

एक दुकान है सामने कुछ--

सारे तस्वीरों को दिखा रहा है गणेश की है मूर्ति राम सीता जी की कृष्णा जी की --

ये खटाल है य पर चार गाय पांच गाय बंधी हुई है।

पेड़ के पेड़ में एक सीढ़ी लगा हुआ है।

के नीचे लाल कलर की चादर बिछी है।

नीचे की तरफ बैठा हुआ है एका एक आदमी का पैर दिख रहा है।

पार्किंग एरिया है यहां पे कुछ गाड़ी लगी हुई है पार्किंग ये--

नारियल के कुछ पेड़ है जो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

एक अलमारी है एक दरवाजा है जो खुला हुआ दिख रहा है दरवाजे पर कुछ फोटो लगी हुई है।

ये बहुत सारे सामान कपड़े दिख रहे हैं।

दोनों साइड काफी कपड़े भरे हुए हैं अलमारी में व बॉक्स लगे डब्बे रखे हुए हैं।

सामने की तरफ में एक सोफा लगा हुआ है सोफा पे दो--

बाहर की तरफ में कुछ गाड़ियां बाइक कार खड़े हैं।

सामने मोर के ऊपर एक बास लगी हुई है जो दिख रही है।

नीचे काफी कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं बड़े-बड़े ईटे दिख रहे हैं।

नीचे की सब नीचे बैठे हैं सामने की ट टेबल रखी हुई है।

बहुत सारे टेबल कुर्सियां लगाई गई है सामने पीले कलर की लाइट जल रही है।

काफी गाड़ियां खड़ी है एक छोटी सी सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए--

यहां पे बहुत लड़के लोग हैं जो लाइन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।

दूसरी तरफ एक आदमी एक बच्चे का बाल काट रहा है।

एक पराग विश्व ढाबा करके लिखा हुआ है भी उस--

हमने एक मशीन रखी हुई इसमें हम लोग पाढ़ी क्योर करते हैं।

सब देख एक पोस्टर है पोस्टर में हरा कलर का कुछ ड्रॉ किया गया है।

नीचे कुछ अ अ एक्सरसाइज पार्ट भी रखे हुए हैं।